इसके बाहर मुझे एक मेन गेट नजर आ रहा है यहां पर मुझे बैठने के लिए बेंचेस भी दिख रहे हैं और--

इससे ज्यादा मुझे कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे स्टैंड के ऊपर एक गाड़ी को खड़ा किया हुआ है और कार को धोया जा रहा है।

बहोत ज्यादा पानी भी दिखाई दे रहा है।

ये एक पुस्तक भंडार है यहां पे बहोत सारी पुस्तके रखी हुई है बाहर मुझे बैट बॉल और कैरमबोर्ड भी नजर आ रहे हैं।

इसमें मुझे कलरफूल पिलर्स नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग में मुझे एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

बहोत से गाड़ियां भी दिखाई दे रही है और हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

साथ मे मुझे हरे भरे पेड़ भी नज़र आ रहे है और छोटी-छोटी झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है।

स्टेज है मुझे कुछ लोग डांस करते हुए और गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग के सामने मुझे कुछ पिलर्स भी नज़र आ रहे हैं और एक साइड में शटर बंद दिखाई दे रहा है।

दीवारों पे बहुत सारे वा एं पोस्टर भी लगाए हुए हैं।